यहाँ पर आसमान का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है यहां पर एक ग्रीन कलर की चादर दिखाई दे रही है।

यहाँ कुछ घर दिखाई दे रहे है जिनकी दुकानें दिखाई दे रही है और कुछ डमी दिखाई दे रहे है दीवारों का कलर पर्पल वाइट ओरेंज दिखाई दे रहा है और कुछ लाइट वगैरा --

यहाँ पर आसमान का कलर ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर वाइट येल्लोव ऑरेंज दिखाई दे रहा हैं।

पर आसमान का कलर ब्लू वाइट दिखाई दे रहा है और एक नदी दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू ग्रीन दिखाई दे रहा है।

यहां पर आसमान का कलर पर्पल ब्लू ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ टेम्पल दिखाई दे रहे है जिनकी दीवारों का कलर ग्रे दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर आसमान का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है और एक दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर ब्राउन रेड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों का कलर रेंड व्हाइट ब्लू दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पोस्टर ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।

और कुछ कार बाइक ओटो दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहां पे एक सड़क दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रे दिखाई--